यहां पे एक बाइक का शोरूम है।

के ऊपर बहुत सारे लैंप्स लगे हुए हैं।

बहुत सारे लोहे के कुछ खंबे लगे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे लोग खेलते और चलते हुए दिख रहे हैं।

इस फोटो में एक बहोत बड़ा बिल्डिंग है जिसमें बहोत सारे कांच की खिड़कियां हैं बहोत सारे खंभे दिख रहे हैं।

उसपे एक आदमी बैठा हुआ है और उसके बगल में एक ब्लैक कलर की टोपी रखी हुई है।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

टेलीफोन रखा हुआ है और बगल में एक एक आदमी भी खड़ा है।

बाहर में एक शटर और ग्रिल दिख रहा है।

बगल में एक कार्टून भी रखा हुआ है और नीचे में एक लाल कलर का मैट भी है।

एक बिल्डिंग है उसके बाहर एक गुलाबी झंडा लगा हुआ है।

बहुत सारे काँच के शीशे लगे हुए है।

बगल में बहुत सारे पेड़ हैं और जमीन में बहुत सारे हरे भरे घास हैं।

दूर में दो लोग खड़े हैं और बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

एक रिक्शा ब्लू कलर का है जिसमें एक फोन होल्डर लगा हुआ है।

यहां पे तीन बाइक लगे हुए हैं और दो साइकिल लगे हुए हैं।

यहा पे एक तलाब दिख रहा है जिसके ऊपर तीन पेड़ लगे हुए है।

यहां पे बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत सारे ऑटो भी हैं।

बगल में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

बगल में दो लड़कियां नहा रही हैं।

वहां चार लोग खड़े हैं और बहोत सारी बोरियां रखी हुई है।

ऊपर में बहुत सारी लाईट्स लगी हुई हैं।

बाउंड्री के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ भी हैं।

यहां पे एक रोड है जिस पे एक बाइक जा रहा है।

फोटो में एक घर दिख रहा है जिसके ऊपर रजहरा लिखा हुआ है।

अड़े है और इसमें बहोत सारी जालियां लगी हुई है।